डब्बे के अंदर बहुत शेड बने हुए हैं कुछ चूड़ी रखी हुई दिखाई दे रही है।

पास में अ चूड़ियों के सेट बने हुए पेकिंग में दिखाई दे रहे हैं।

के ऊपर छोटी दुकान दिखाई दे रही है ऊपर के साइड में सुधा नाम का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

दो लोहे के पाइप दिखाई दे रहें ऊपर की साइड से जंगल नजर आ रहा है पहाड़ी दिखाई दे रही है झाड़ दिख रहे हैं।

दीवाल के अ अ खिड़कियाँ नजर आ रही है दो दो जाल उसमें खिड़कियों में जाली दिखाई देरी है।

मैरून कलर का बोर्ड नजर आ रहा है उस पे ब्लैक बेरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे के साइड से काँच लगे हुए शोरूम दिखाई दे रहे हैं।

पीछे के साइड से झंडे लगे दिख रहे है लाइट दिखाई दे रही है।

रोड के ऊपर बहुत सारे लोगो का जमावड़ा दिख रहा है झंडे नजर आ रहें हैं।